बहोत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं कुछ विद्यार्थी खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं जो पुस्तकों को पढ़ रहे हैं।

एक-ते एक फर्श बिछा हुआ है नीले उसमे मछलियाँ रखी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है दीवाल का रंग ग्रे रेड कलर का है ग्रीन कलर का हैं ।

एक नीला डस्टबिन दिखाई दे रहा है साइकल पेड़ की छाया सामने रोहन चाय स्टोर जिस पर कुछ पैकेट टंगे हुए हैं।

मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में एक लेटा हुआ है एक व्यक्ति थेरपी कर रहे हैं मुंह पर मास्क --

जिसके ऊपर लाल कलर का निशान बना हुआ है सामने एक छतरी दिखाई दे रही है छतरी के सामने दो मोटरसाइकिल हैं मोटरसाइकिल के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बिल्डिंग का रंग सफेद है।

शादी में आये हुए लोग खड़े हुए हैं वह अपना फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं दो लेडीज हैं तीन जेंट्स हैं।